कार दिखाई दे रहा है।

दे रहा है और मुझे यहां रेल की पटरी भी दिखाई--

केवी हरे फूल भी दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां एक आदमी दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है।